यह पेरोल का टंकी है और बहुत देख सकते है यह लोग तेल निकाल रहे है और यहाँ पे एक भाई बैठा हुआ है और बहुत ही--